बच्चे यहाँ पर मेला झूल झूला झूल कर बहुत ही खुश हो रहे है मेला बहुत ही बेहतरीन --

बहुत ही भीड़ वाला जलूस नजर आ रहा है यह दृशय बहुत ही सांस्कृतिक है।

योगा कर रहे है पास में ही कुछ कांच लगा हुआ है।

एक बस स्टॉप है बस स्टॉप बहुत ही बड़ा है यहाँ पर अलग अलग शहरों मे जाने वाली बसे खड़ी हुई है।

चिकित्सालय है चिकित्सालय बहुत ही अच्छा है यहां पर डॉक्टर बैठते है।

एक बहुत ही पुराना किला नज़र आ रहा है किले के बहुत ही खूबसूरत दिवाले है।

किला का गेट बहुत ही आलीशान और खूबसूरत अच्छा लग रहा है किले मे एक लड़का अंदर की और जा रहा है।

मंदिर के बाहर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है मंदिर के बाहर बहुत सारा भीड़ इकट्ठा है।

एक शादी का समारोह है इस शादी के समारोह मे बहुत ही अच्छी अच्छी लाइटे और फूलों से--

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने लाल रंग की टीशर्ट और काले रंग पैंट पहनी हुई है पास ही मे बहुत सारे ईट--

इस वक्त बारात आई हुई है सफेद रंग की गाड़ियों के आस पास लोग खड़े हुए है।

और ये बैटरी वाले ऑटो को ऑथराइज्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डीलर्स है यहा पर आप किराये पर रिकसा ले--

बहार की और एक हाथ गाड़ी खड़ी हुई है इस हाथ गाड़ी पे लोग गोदाम से बोरिया ला ला कर रख रहे है और कुछ लोग इसको ले जा रहे है।